जैसा कि इस पिक्चर में मैं देख रही हूं एक रेड कलर का डार्क घर है।

यहाँ पे कूढ़े के डस्टबिन वगैरह भी लगे हुए हैं और वहाँ एक बूढ़ा इंसान भी बैठा है जिसका फेस ब्लर है।

ये ब्लू स्टोन की शॉप है यहां पे कुछ गोल्ड वगैरह भी दिख रहा है।

यहां पे गणपति जी हुमाले पहनी दिख रहे हैं उनके सामने एक दीपक जला हुआ--

आदमी है जो उस गाड़ी को देख रहा है और एक गाड़ी ग्रे कलर की भी--

इस पिक्चर मे मैं दिख पा रही हूं एक यहां मेलडेयर की दुकान है यहां पे एक मैकेनिक की दुकान है जिसमें--

जैसे कि दो लड़किया हैं और चार लड़के है।

इस पिक्चर में मैं देख रही हूं एक ब्लैक कलर की बस है जिसका नाम बाल्दीपुर टाइगर रिजर्व है उसके अंदर--

चाय कॉफी उसपे एक आदमी कॉफी चाय पी रहा हैजहा पे एक बाल्टी भी रखी है।

जैसे मैं देख रही हूं एक घर है जिसके अंदर ब्लू कलर का गेट लग रहा है।

जैस कि मैं देख रही हूँ इस पिक्चर में कि काफी लोग काम कर रहे हैं अपने काम में बिजी हैं।

जरा स मे देख रही हु एक शर्ट है थर्टी सेवन --

इस पिक्चर मे एख रही हु जहा पे बाइक है एक कार हैदो लोग --